हम यहाँ एयरपोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं।

कई छोटे और बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

और देख रही हूँ कि एक बहोस बड़ा गेट लगा हुआ है।

आई हु और देख रही हु एक टेबल पड़ी हुई है टेबल के आस पास कुछ कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं।

टेबल पे एक लैंप रखी हुई हैं।

और एक पर्दा भी दिखाई दे रहा है।

मैं यहां एक ग्राउंड में खड़ी हुई हूं और देख पा रही हूं यहां रोड --

कुछ कच्ची भी है और कोर्ट की बाएं साइड में कुछ छोटे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

सामने एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है और एक लाइट का खंभा भी देख पा रही हूं।

मैं यहाँ रोड के किनारे--

मैं यहां एक दुकान के सामने खड़ी हूं यहां पे देख पा रही हूं कि कुछ--

बड़ी सी बिल्डिंग बने जा रही है जिसके--

मोरंग भी दिखाई दे रही है।

चार दरवाजे दिखाई दे रहे हैं।

देख रहे हो कि एक बकरी मेमना मेमने का बच्चा लेटा हुआ है।

दो चादर लगी हुई हैं जो एक ही कलर की हैं।

औ ये टेबल रखी हुई है और--

कपड़े टंगे हुए है बोर्ड लगा हुआ है।

कुछ लाइट्स भी जल रही है।

हैं और बाइकों पे कुछ लोग बैठे हुए हैं।

मैं एक बिल्डिंग के बाहर खड़ी हूँ औ देख रही हूँ कि एक व्यक्ति बिल्डिंग के अन्दर --

खड़ा हुआ है एक व्यक्ति बिल्डिंग के बाहर खड़ा हुआ है।

और बिल्डिंग के बाहर कुछ बाइकें स्कूटर वगैरा भी दिखाई दे रहें--

कुर्सियाँ कुर्सियाँ भी पड़ी हुई हैं और उन कुर्सियों पर कुछ--

नजर आ रहे हैं और कुछ खा भी रहे हैं।

मैं यहाँ एक फैक्ट्री के अंदर आई हुई हूँ औ देख रही हूँ फैक्ट्री में --

कुछ लोहे के स्टैंड भी दिखाई दे रहे हैं।

ऑटो म एक ऑटो में एक व्यक्ति अंदर बैठा हुआ है एक व्यक्ति बाहर--

एक बूढ़े व्यक्ति भी बैठे हुए दिखाई दे रहे--

मंच पे कुछ स्त्रियाँ नृत्य करती हुई दिखाई दे रहीं--

मैं यहाँ एक इस्कूल के ग्राउंड में हूँ।

पर्दे लगे हुए दिख देख पा रही हूं।

दिखाई दे रहे हैं जो कि बोरियाँ लादे हुए हैं।

एक लड़का औ एक लड़की खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

जो कि काफी दूर दिखाई दे रहा है।

कैप लगा रखी है और ग्रीन कलर की--

सदरी भी डाल रखी है पीछे एक--

बहोत बड़ा गेट लगा हुआ है।

कुछ बाईकें भी खड़ी हुई दिखाई दे रहे हैं।

पेड़ भी दिखाई दे रहा--

रखा हुआ हैं स्टेचर के ऊपर एक तकिया रखी हुवी हैं।

और एक मेज रखी हुई है जिसपे कुछ सामग्री रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

और एक खिड़की बनी हुई है जो कि लोहे की बनी हुई है।

क और कुछ ब्यक्ति दिखाई दे रहें हैं एक व्यक्ति के पास कुछ सामान रखा हुआ हैं।

और एक व्यक्ति गले में बैग टांगे हुए खड़ा है।

मैं यहाँ एक रोड के साइड में हूँ और देख रही हूँ कि एक--

एक बच्चा दिखाई दे रहा है उस बच्चे की गोद में एक छोटा बच्चा भी है।